यहां पर आप लोग देख सकते है सामने की तरफ ये एक बहोत बड़ा पार्क बना हुआ है।

यहाँ पर बाहर भी दो गाड़ियाँ खड़ी हुई है इसके सामने एक गाड़ी का बोनेट भी खुला हुआ डला हुआ है। जो की आप देख सकते है और इसके पीछे एक येल्लो कलर का घर भी बना--

और यहाँ पर काफी सारे पेड़ भी लगे हुए है और यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई है।

यहाँ पर काफी सारे झूले लगे हुए हैं | यहाँ पर एक येल्लो और रेड कलर की स्लाइडिंग भी लगी हुई है और एक नेट भी लगी हुई है | यहाँ पर काफी सरे पेड़ भी लगे हुए हैं |

ये आप देख सकते है सामने की तरफ दो बड़े-बड़े बैनर लगे हुए हैं जिनमें से एक घ एक में डाक घर बचत खाता लिखा हुआ है।